सामने कुर्सी और बहुत सारे लोग खड़े हैं खिड़की दिख रही हैं जिसमे ग्रीन कलर कर्टेन्स लगे हैं और जमीन पे मार्बल लगा हैं।